और ये बगल में दीवाल भी वाइट कलर का है उसके पेड़ भी इसमें फूल का ही है बहोत अच्छे लग रहे हैं ये गार्डन है और ये देखने में बहुत खुबसूरत लग रहे हैं।

जो की देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर शीशा विशा लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारे बाइक खड़े हैं और एक चार चक्का भी बाहर में खड़े हैं जो--

ये तो कृष्ण पाली क्लिनिक है जिसमे की ये अंदर में डॉक्टर बैठते होंगे और उसके बाद इसके नीचे मे जो है वो मॉल लग रहे है

दो साड़ी है शीशे के अन्दर रखा हुआ है और ये शीशे का बना हुआ है ऊपर में इसका जो है बहोत ही अच्छा लग रहा है देखने में साइड में भी और अंदर में----

यह कॉलेज है जिसमें की जिम करने लटकाने समान है कॉलेज भी बहुत बड़े हैं और उसके बगल में भी बहुत ज्यादा स्पेस है और यह बहुत बड़ा फील्ड है।

और इसके बगल में जो है खंबा है बिजली का और आगे में रोड है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।